बहुत सारे यहा आदमी भी है जो बैठा हुआ है लाल कलर का बहुत सारा कुर्सी है।

बगल में सफेद कलर का क्रीम लगा हुआ है।

बहुत बड़ा दुकान है और दीवाल में एक एल_ई_डी टी_वी लगा हुआ है।

यहां बीच में एक रोड गया हुआ है बगल में लाल कलर का दो दीवाल है।

यहां टमाटर मिर्ची रखा हुआ है एक टमाटर सड़ा हुआ है।

भिंडी भी रखा हुआ है।

बगल में दूसरा किताब कॉपी भी रखा हुआ है जो बिरंगा है।

यहां कैरम बोर्ड भी टंगा हुआ हैं।

नीचे बहुत पानी इकट्ठा है नीचे बहुत सारा आदमी भी है।

जो सारा कुर्सी रखा हुआ है।

के हाथ में काला कलर का पाइप है जो पानी पता रहा है।

साइड में बहुत सारा पेड़ पौधा है।

बगल में एक सफेद कलर का छोटा मोटा घर भी दिख रहा है।

बगल में एक आदमी खड़ा है जो माक्स पहना हुआ है।

नीचे बहुत सारा बाइक लगा हुआ है।

बगल दीवाल में काला और धब्बा लगा हुआ है।

लाल पीला कलर का चदरा दिया हुआ है बगल में बहुत सारा बैलून है।

बगल में बहुत सारा पेड़-पौधा है एक हेलमेट है जो काला कलर का है।

बहुत सारा आदमी और एक औरत बैठी हुई है।

बहुत बड़ा मस्जिद है एवं बहुत सारा आदमी खड़ा है।

इसके माथे में सफेद कलर का टोपी है।

दीवाल में एक ए_सी लगा हुआ है जो सफेद कलर का है।

बहुत सारा बछड़ा भी है।

यह एक ट्रैक्टर खड़ा है जिसमें लाल कलर का मशीन लगा हुआ है।